एक बहोत बड़ा पिच है जिसमें की सभी क्रिकेट खेल रहे हैं। ये खेल का मैदान है।

छोटा भी मिल रहा है। बड़ा भी मिल रहा है और कलरफुल कप मिल रहा है। देखने में काफी शुन्दर है। हर --

और यहाँ पे सभी ले भी रहे हैं और बड़े बोहोत बड़े-बड़े फिश हैं। देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे सभी --

ये इसमें एक जंगल है जिसमें का ये ग्रिल के पीछे एक चिड़िया है।

ग्रीन कलर का घास है। काफी सुंदर से है। इसमें डोकोरेशन हुआ है।

बगल में चटनी है। ग्लास रखा हुआ है।